आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

गाड़ी का कलर ब्लैक है।

यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

अमने में एक खजूर का पेड़ है कुछ वायर्स भी है।

एक पानी का टंकी है।

सामने में लैपटॉप लिखा हुआ है जो रेड कलर के बोर्ड में लिखा हुआ है।

एक बैग भी है जो टेबल पे रखा हुआ है।

साइड में बहुत सारे पत्ता जमा किया गया है।

बहुत सारे पेड़ पौधे भी साइड में लगाए गए हैं।

बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं।

दीवाल में बहुत सारे खाने का डिश छपा--

यह एक लेख का फोटो है।

एक कांच का गेट भी है।

यह एक रूम का चित्र है।

यहां पे बहुत सारे आदमी भी हैं।

यह एक रेस्टोरेंट का चित्र है जिसका नाम देसी स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट है।

अंडा का कैरेट भी रखा हुआ है।

यह एक पार्क का चित्र है।

एक जगह पर पीला कलर का टेडी बेयर भी रखा हुआ है।

बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

बहुत सारे लोग भी हैं।

यहां पे कुछ जगह आग भी जलाया गया है।

यहां बहुत सारे लोग आए हुए हैं एक पेड़ भी है।

यहां पे एक शेड बना हुआ है जीसके नीचे बहुत सारे हाथ में खड़े हैं।

एक यहां पे ओवर ब्रिज बनाया गया है जो लोहे का है।

बहुत सारे डेस्क भी है साइड में एक ड्रावर भी है।

यहां एक खिड़की दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

एक स्टील का गेट भी है।

यह बोर्ड रेड कलर का है।

इस घर का कलर व्हाइट है।

यह एक लेक का फोटो है यहां दो आदमी फोटो खींचा रहा है।

जिसका नाम एच_पी पेट्रोल पंप है।

यह एक दुकान का चित्र है इसका नाम मान्यवर है।

इस रुब का कलर व्हाइट है।

यह एक होटल का चित्र है ।

यहां पे बहुत सारे पेड़ भी है।

ऊपर का कलर काला हो गया है।

यहा पे कुछ ब्लब भी लगे हुए है।

आदमी ने वाइट कलर का शर्ट पहन रखा है।